यहाँ दो पैनल लगे हुए उसमे लिखा गया है चेतावनी वन क्षेत्र --

पार्क में किसी भी प्रकार का कीड़ा कुड़ा प्लास्टिक डालने पर --

और भगवान के आगे दो थाल में पानी दिख रहा है।

एक बर्तन है और इस बर्तन का नाम है ठेकी।

ये ठेकी म पानी के लिए --

और यहाँ कई लोग मौजूद है।

और इस कंपनी में बहुत से लोग देख रहे और उन लोगे ने सर पे --